और ये एक मशहूर इमारत है जिसके सामने मोनोलिथिक रैलिंग --

और इसके बीच में एक दरवाजा बनाया गया है|

है और सामने एक तालाब भी बनाया गया है। इसके सामने --

यह एक दो मंजिला इमारत है और ऊपर की मंजिल में --